एक मनुष्य की फोटो है जो किसी लग्न समारोह में जाकर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं।

खूब सारी बाइक खूब सारी कार यहां पर पार्किंग मे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक शादी की में जाने की सजावट का रास्ता है।

तीनों ग्रे कलर के हैं जिम का फोटो लग रहा है।

कहीं कहीं घर नजर आ रहे हैं तालाब के पास और तालाब के दूर।

ग्रीन कलर की बैठने की जगह बनाई हुई है ऊपर सफेद और गुलाबी फुग्गे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर लकड़ी का डिजाइन बना हुआ है।

और आगे एक ब्लू कलर की बाल्टी रखी है इसके इर्द गिर्द --

यह एक वॉटरफॉल की इमेज है जहां पर--

राइट साइड में बड़ा पत्थर रखा हुआ है पानी बह के ऊपर से नीचे आ रहा है।

बीच में एक सड़क जा रही है जो ग्रे कलर की है।

रेलवे स्टेशन के बाहर ला वा सफेद कलर की सुमो कार खड़ी है।

इसके सामने बहुत सारी गाड़ियां पार्क है टू वीलर और कुछ लोग खड़े हुए हैं मोबाइल शॉप के बाहर।

उसके ही आगे एक काला और पीले कलर के ऑटो रिक्शा खड़े है।

यहां पे काफी लोग जमा हुए हैं बच्चे औरतें ज्यादातर वो ही दिख रहे हैं काफी कुर्सियां रखी हुई है।

खुले मैदान में ये समारोह टाइप हो रहा है।

यहां पर सेल होल सेलर और रिटेलर दोनों की दुकानें हैं लाल कलर का एक टेंपू खड़ा है।

यहां पर खजूर के दरख़्त भी लगे हुए हैं वहां पर नीचे एक ब्लॉक्स वाला रस्ता है जहां पर पानी पड़ा हुआ है।

काफी हरा-भरा खेत है। जहां पर इसकी फसल में पूरी की तरह से गोभी लग चुकी है।

जिसके पर्दे और बेड के पीछे का कवर का सेम कलर है इसकी बेडशीट सफेद कलर में है उसके आगे दो कुशन रखे हुए --

के पीछे दो टावर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग का कलर पीला है बिल्डिंग काफी बड़ी है।

जैसे के घर का आदि सामान खान पान की जरूरत और किचन का सामान एक आदमी यहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

इसके अगल बगल में हरे गार्डेन है और पेड़ हरियाली से घर ढका हुआ है।